खिड़किया दिखाई दे रही है खिड़कियों मे जालीदार खिड़किया लगी हुई है।

दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमें काफी सारे टंकीस रखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ --

और कुछ पत्थर पड़े हुवे दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ साइकल्स भी हमे दिखाई दे रही है।

शॉप्स दिखाई दे रही है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके निचे कुछ गाड़िया खड़ी हुई है कुछ फॉर व्हीलर और एक टू व्हीलर ।

ये एक बडी सी शॉप दिखाई दे रही है इस शॉप के बाहर पंद्रह - पंद्रह रुपये का कुछ टैग लगा हुवा दिखाई दे रहा है।

और लगे हुए है और उपर से कुछ लाइन्स वाली और लाइन्स से डेकोरेट किया गया है यहाँ पर--

दिखाई दे रहे है और यहाँ पर हमें बस भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमें कई सारे लगे हुए पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे है और उपर पंखा भी लगा हुआ है।

टिकी हुवी दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमे कुछ बाज़ की लकडिया दिखाई दे रही है और गैया और बछड़ा दिखाई दे रहे है।